दो रेड कलर की हेडलाइट्स है बीच में एक ब्लू येलो कलर की नंबर प्लेट है।

यहां हमे एक सुन्दर सा स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज को डेकोरेट करने के लिए वाइट कलर पिंक कलर इसमें कलरफुल फ्लावर्स का यूज़ किया गया है।

स्टेज के ऊपर एक सोफा रखा गया है वाइट कलर का सामने ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है सीढिया है।

एक बहुत सूंदर सी व्हाइट कलर की कार दिखाई दे रही है दो हेडलाइट है साइड मिरर है निचे बोनेट पे येलो कलर की एक नंबर प्लेट है।

बगल में हेंड वॉश के लिए वॉश बेसिन लगा हुआ है मंदिर के ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है।

यहां पर हमे एक बहुत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है दुकान में काफी सारी सेल्फ है इसमें काफी सारे ब्रांडेड कपडे भी टंगे हुए दिखाई दे रहे है।

यह हमे बहुत ही सुन्दर स जो है मन्दिर दिखायी दे रह है और मन्दिर बजरंग बलि जी का है वाइट कलर की बहुत ही सुन्दर सी ये मूर्ति है मूर्ति के ऊपर काफी सारे छोटे-छोटे छत्र टंगे हुए है।

यहाँ हमे बहुत बड़ी रोड दिखाई दे रही है रोड के सामने हमें बहुत ही सुंदर हरा भरा सा जो है गार्डन या जंगल भी हो सकता है जो दिखाई दे रहा है।

बहुत ही अच्छा लग रहा है आजू बाजू काफी तरफ से सुंदर सुंदर फ्लावर्स का डेकोरेशन भी किया गया है बहुत ही अच्छा है।

यहां पर हमें एक रोड दिखाई दे रही है रोड पे सामने एक हमें वाइट कलर की कार दिखाई दे रही है फ्रंट में दो हेडलाइट है नीचे येलो कलर की एक नंबर प्लेट है।

सामने हमे काउंटर दिखाई दे रहा है काँच का और गेट के पास हमे काफी सारे लोग खड़े दिख रहे हैं यहाँ पे जो हमे बच्चों के कपड़े टंगे दिखाई दे रहे हैं।